ये बहोत सुन्दर नेचर है ये धब धब दिख रहा है छोटे-छोटे पेड़ भी दिख रहे है बड़े-बड़े पत्थर भी है ऊपर से पूरा आसमान--

पीछे बहोत सारे लम मो अ बड़े-बड़े बिल्डिंग है और --

लाइट्स हैं पेड़ है ब्लैक कलर का वो बोर्ड है एक ब्लैक कलर का एटो है ।

चार औरत खड़ी है पीछे ओ स्टोन का कुछ ट्री बना हुआ है ऊपर एक मूर्ति भी है और उसको एक छत करी हुई हैं।

एक कार है शायद कार सर्विसिंग के लिए आई हुई है पूरी कार खुली हुई है उसके पूरे ब्लैक कलर के वो मशीन वगैरा सब दिखाई दे रहा है।

पीछे अ की साइड ये येलो कलर से डिजाईन बनी हुई है नीचे फोटो लगा हुआ है बहुत सारे भगवान की --

ये जिम है ये हॉल है बड़ा सा हॉल में येलो कलर से पुता हुआ हॉल दिख रहा है ।

पेड़ लगे हुए है बड़े-बड़े से साइड में--

दोनों तरफ मोड़ी अन्दर गेट के ऊपर ये गोल - गोल मीनार सी दिखाई दे रही है बड़ी --

तरफ भी पहाड़ दिखाई दे रहा है आस-पास बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए जंगल सा दिख रहा है और ये ऊँचा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है ।

उस तरफ भी पहाड़ है पेड़ लगे हुए--

काम चल रहा है बड़ी-बड़ी मशीने रखी हुई है और ये सामने एक बिल्डिंग दिख रही है।

पेड़ो पर बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है लाइटे लगी हुई है नीचे रैंप लगे हुए है रात का समय है लाइटे जली हुई है ।

ये गाँव में रोड के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी है परफेक्ट लिखा रहा है इसके ऊपर--

छत डली हुई है ये और ये खम्बे से तीरछे लगे हुए है बहुत सारे--

खम्बे लगे हुए है टिके हुए है दीवार से सपोर्ट के लिए।

ये रोड के किनारे साइड में ये रेस्टोरेंट है ये जिसपे दावत रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

सामने समोसे लगे हुए हैं।

वालय सिटी क्लब की ये अन्दर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहै है इसमें --

ये चर्च दिख रहा है हमें ये चर्च है सामने दीवार पर ईसा मसीह लगे हुए हैं।

गुब्बारों से बैलून से डेकोरेशन किया गया है ये--

ये गार्डन है लड़का खड़ा हुआ है नीली शेरवानी पहन कर ये दिखाई दे रहा है।

पीछे डेकोरेशन दिखाई दे रहा है शादी का ये --

टेबल कुर्सियां दिखाई दे रही है सामने दूरी पर ही और ये लड़का--

फोटो निकला तो वो दिखाई दे रहा है नीले कलर --